लाल कलर की शर्ट और सफ़ेद कलर की पैंट पहनी हुई दिख रही है और आगे बैग टांगा हुआ दिख रहा है।

दो आदमी दिख रहे हैं एक आदमी --

और आदमी खड़ा है जिसने मास्क पहन रखा है।

जमीन पर हरी घास दिखाई दे रही है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं आसमान दिखाई दे रही है दे रहे हैं।

पर लिखा हुआ हैहरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हज़ार उन्नीस।

कुछ लिखा हुआ है मद्रास डोसा सेंटर ।

उन ऑटो के पीछे एक काला सा गेट दिखाई दे रहा है जिसपे प्लस का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हरे --

एक महिला और एक आदमी दिखाई दे रहा है जिनके आगे एक स्टैंड लगा --

और उन पर अलग अलग कीमत लिखी दिखाई दे रही।

किसी पर तीन सौ पिचहतर तीन सौ पचपन तीन सौ निनानु दो सौ निनानु।

सीलिंग पर लगे फैन दिखाई दे रहे हैं।

सजावट के लिए झूमर है दिखाई दे रहे हैं नीले और पीला कलर के।

इंटर बी.एस.सी एम.ए बी.बी.ए एम.जी.ए कंप्यूटर सेल्स एंड साइंस --

और डी.एन. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक पौधा लगा--

एक शोरूम दिखाई दे रहा है जिसके --

कुछ लोगों के हाथ में अगरबत्तियां दिखाई दे रही हैं।